यहाँ की वस्तुएँ और कपड़े और बाकि सब चीजें बहुत सुन्दर और अच्छी होती हैं ।

जैसा कि तस्वीर में दिखाया जा रहा हैकि यहाँ एक सिग्न बर्गर काॉर्नर है|